सामने एक दुकान दिखाई दे रही है जिसपे बहोत सारे बेग टंगे हुए है पेन टंगी हुई है बिलरा टंगे हुए है और बुके दिखाई दे रहीं है।

सामने फल-फ्रूट की दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पे बहौत सारे काले अंगूर तो सिंपल अंग काले अंगूर और अंगूर रखे हुए हैं।

सामने बोरियों का टरा बिछा हुआ दिखाई दे रहा है जोकि एक स्कूल मे नीचे बिछा हुआ है वहां पे बहौत सारी लड़किया --

नीम का पेड़ दिखाई दे रहा जिसकी पत्तियाँ ही पत्तियाँ नजर आ रही हैं आसमान सफेद दिखाई दे रहा है साथ ही --

सामने एक दरी बिछी हुई दिखाई दे रही है जिसपे एक कैमरे की मशीन की तरह मशीन रखी हुई है।

सामने एक सुपर सेट वाली कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही है एक टेबल रखा हुआ है उसके ऊपर दो गमले रखे हुए हैं स्कैनर रखे हुए हैं ऊपर की दीवार लाइट पिंक --

सामने पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहोत सारी मोटर साइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं आसपास पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं पेट्रोल टैंक बहोत बड़ा दिखाई दे रहा है।